पीछे पाउच वगैरा जो राखी हुई है पीछे पटेल की दुकान दिख रही है साइड में चेयर बगैरा दिख रही है कचरे का डब्बा बड़ा दिख रहा है जो की नीले कलर का है ऊपर एक स्टाल लगा हुआ है जो की बहुत ही अच्छा लग --